जो शटर वाले गेट होते हैं वो सब बने हुए हैं तो कोई छोटा सा कमरा ऑफिस --

होटल नजर आ रहा है ये रेस्टोरेंट वगैरह जहाँ पे छोटे-मोटे नाश्ते वगैरह आप जाकर के कर सकते हैं मिठाइयां नाश्ता चाट पकोड़ा वगैरह खा सकते हैं।

वेटिंग एरिया किसी सभागार वगैरा का ये वेटिंग एरिया नजर आ रहा है अच्छी खासी सभागार है बड़ी सी।

किस्म किस्म के मछली जो है वो रखे हुए--

मीट हाउस का ये हांडी मीट हाउस का नजर आ रहा है बहुत कुछ लोग ग्राहक भी खड़े है दुकानदार भी खड़ा है।

साउंडबॉक्स की व्यवस्था है पोस्टर अच्छे लगे हुए हैं।

कोई बड़ा सा खेल का मैदान नजर आ रहा है कुछ लोग दूर मे कही बैठे हुए नजर आ रहे है।

ये एरियल फोटो लिया हुआ है बहुत ऊँचाई --

एक दो घर नजर आ रहे हैं कुछ पेड़ पौधे भी नजर --

प्रतिकृति लग रही है जो किसी मुस्लिम जगह का यह पे नजर आ रहा है हो सकता है की क्रिश्चियन का भी हो जो ईसाइयों लोग के--

ये किसी पहाड़ी एरिया के बहुत ऊंचाई सी ए रियर व्यू से लिए गए --

यह आपका वाटर पार्क है वाटर पार्क यहां पे लोग गर्मी के मौसम में जाते हैं नहाने।

लग रहा है कि ये ऊपरी मंजिल पर है कहीं ये ग्राउंड फ्लोर पर नजर नहीं आ --

दुकान है सीलिंग्स भी बहुत अच्छे सजाया हुए हैं कोल्डड्रिंक्स --

जिम का दृश्य है यह जिम में दो व्यक्ति खड़े हैं एक व्यक्ति का शोध करने के लिए बड़ा सा डंबल उठा रखा--

ही है इसमें चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए --